एक सॉस की बॉटल पड़ी हुई है।

साथ में ही यहां पर वाइट कलर की हमें दिख रही दीवारे--

सामने एक लड़की के हाथ में ब्लैक कलर का फोन दिख रहा है।

साथ में पर्दे लगे हुए हैं हल्के से ब्राउन कलर के।

यहां पर बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

और यहां पर दीवार व्हाइट कलर की है।

जिसके पास तीन व्यक्ति बैठे हुए है।

पीछे बड़े बड़े पिलर्स वाइट कलर के दिख रहे--

पीछे की ओर येलो रंग की दीवार--

पीछे हमें दिखाई दे रही है मूर्ति।

यहां बहोत सारे लोग काम कर रहे--

सॉरी फूलों की क्या यहां भीड़ लगी हुईं हैं।

साथ में एक क्लीनर दिख रहा है।

कुछ टुल भी दिखाई दे रहे हैं।

दो साइकल दिखाई दे रही हैं यहां पर हमें।